कुछ व्यक्ति सामने की तरफ--

कई सारे व्यक्ति--

कुछ लोग सामने की तरफ--

दुकान में कई सारे--

कुछ लोग सामने की तरफ--

स्टेज पर एक सोफा रखा हुआ है।

ई पर एक सोफा रखा हुआ है।

और कुछ कलरफुल लाइटें भी--

और कुछ कलरफुल लाइट --

स्टेज पर एक सोफा रखा हुआ है।